रास्ते पर दो लड़के जा रहे है।

तैर रही हैं किश्तियों में लोग बैठे हुए हैं।

जहां बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और बहोत सुंदर छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं।

दो सोफे लगे हुए हैं।

सामने एक झरना है जहां कि बहुत सारा पानी बहता हुआ दिखाई--

ये एक दुकान है दुकान पर--

चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं।

रास्ते की एक तरफ बहोत सारी--

और दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी है।